इस चित्र में बहोत बड़ा बेडरूम है जिसमें महाराजा सोफा लगा हुआ है।

जेमा बहुत सारे कांच के अंदर ज्वेलरी रखी से--

ये फोटो में एक बहोत बड़ा कपड़े की दुकान है।

यह फोटो में एक बहुत बड़ा सा स्टेशन है स्टेशन के बाहर बहुत सारे ए_टी_एम हैं।

अ लेबर मन हं काम कर थे।

बहोत सारी फोटो लगी है दीवाल पर।

फोटो मां एक बहुत बड़े जिम --

तो मा एक फैंसी स्टोर के दुकान हरे जेमा बहुत सारे गुलदस्ता और गमले और --

कुछ पंडित मन ह बैठी से--